ये एक बहोत बड़ा कॉरिडोर है और डबल बिल्डिंग बनी हुई है इसमें वाइट और ऑरेंज कलर --

ऊपर हैलोजन लाइट लगी हुई है एक बड़ी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और ऊपर टेरेस पे रेड कलर की झालर लगी हुई है जो पूरी कवर्ड हो रखी है।

ये एक सुरंग आ गड्ढा सा बना हुआ है और दीवाल का गड्ढा बना हुआ है।

ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और साइड में वॉल जा रही है आगे साइड ।

ये एक सूप एंड स्माइल की शॉप है और यहां पे बाहर रेड़ी लगी हुई है और एक आदमी बन रहा है एक आदमी वहां खड़ा हुआ है।

एक टाटा मोटर्स का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साइड में टाटा लिखा हुआ है।

बहोत बड़ी ये शॉप है और उसके बाहर रेड एक कलर की कार खड़ी हुई है।

टीन रखी हुई हैं बहुत सारी और पीछे साइड एक ब्लैक कुर्सी रखी हुई है उसके ऊपर एक मशीन रखी हुई है और बहुत बड़ा सा शॉप दे --

ऊपर ए_सी लगा हुआ है एक छोटी सी विंडो बनी हुई है उसपे कटर्न्स लगा हुआ है ब्लैक कलर --

कटिंग हो रही है मशीन से बहोत बड़ा टाइल है और दो आदमी पकड़े हुए हैं दो आदमी पीछे खड़े हुए--

ये एक घर है और इसके बाहर कुआं बना हुआ हैं और नीचे पाइपे गिरी पड़ी हुईं हैं व्हाइट कलर का पेंट हो रखा हैं।

ये एक शॉप बनी हुई है जिसमें पॉलिथीन चढ़ी हुई है बाहर साइड और टेबल का बड़ा सा शो पीस रखा हुआ है।

फ्लावर्स है और ऊपर की स्टेज फ्लावर रेड और पिंक कलर के लगे हुए साइड से सीढ़ियां जा रही हैं लाइटिंग हो रखी है दो आदमी खड़े हुए हो--